यहाँ एक बहुत बड़ा ग्राउंड है जिसके सामने एक लंबी गुलाबी रंग की दूर तक फैली हुई बिल्डिंग बनी हुई है।